और दीवारों पे कुछ लोगो की तस्वीरे लगी हुई हैं ।

सामने कोई धर्म स्थल है उसमे पेड़ नारियल का लगा हुआ है।

सामने कोई धर्म स्थल है जिसके दीवालों को बनाने के लिए बम्बू लगाया गया है और आस-पास में बहुत सरे छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा पहाड़ी नज़र आ रहा है।

और उसके पास में एक चढ़ने वाला सीढ़ी जो छत पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह किसी कार्यालय के सामने की तस्वीर है जिसकी दीवालो पे कुछ तार लटके हुए हैं ।